तथा यह फोटो दोपहर के समय का लिया गया है इस फोटो में मौसम भी काफी साफ दिख रहा है।

यह फोटो किसी सब्जी मंडी का है जो काफी बड़ी है।

इसमें काफी लाइटें लगी हुई है।

सीमेंट के दुकान के बाहर का है।

यह फोटो ये किसी हाइवे का है।

यह फोटो एक क्लीनिक का है।

यह फोटो एक बहोत बड़ी बिल्डिंग का है।

काफी बड़ी है तथा यह--

इस दुकान का नाम तंदूरी चाय स्टॉल है।

जिसमें काफी सारी ये जो काफी सारी पूरा --

यह दुकान काफी फेमस है इसमें कई प्रकार की कॉपी व किताबें मिलती हैं।

यह फोटो रेल स्टेशन का है।

यह दुकान आप बोलोगे टाइल्स की बहुत बड़ी दुकान है जिसमें--

यहाँ अपोलो के टायर मिलते हैं जो एक फेमस टायर कंपनी हैं।

यह फोटो एक कोचिंग सेंटर का है।

जो काफी बड़ा है यह फोटो ।

इस फोटो में एक बेहतरीन रेंजर साइकिल दिख रही है जो काफी--

अलग है तथा उसके पास ही--

तथा समय आने पर सुबह एवं शाम को जिम में काफी भीड़ हो जाती है।

इस फोटो में एक बिल्डिंग दिख रही है तथा जो रेड तथा व्हाइट कलर की है।

जो काफी ऊंचे ऊंचे हैं तथा यह पानी भी काफी साफ दिख रहा है।